ये खुली जगह है जिसमें दरख्त ही दरख्त लगे हुए हैं।

और पाड़क बना हुआ साथी लोग इधर खाने के लिए आते हैं।

खाने पीने वाली दुकान है सामने है सामने से जानकारी जा रही है।

कागज लगे हुए हैं ये आदमी खाना पका रहा है रेस्टोरेंट बहुत अच्छा लग रहा है।

ये चाय की दुकान है इसमें चाय है रास पड़ा हुआ--

और कपड़े की दुकान है इसमें जूतियोकी दुकान है और बहुत ज्यादा--

ये इंडिया का मंदिर है लोग आते हैं पूजा के लिए--

और सामने दीवार पर पेपर लगा हुआ जिसमें तस्वीरे लगी हुई हैं।